ये लोग कंस्ट्रक्शन का--

लोगों ने बैग टांग रखा है कुछ--

फूलो जैसी एक चीज रखी हुई है।

ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन है।

एक मीटर बॉक्स की तस्वीर है।

एक टीचर इन्हें सिखा रही है।

फूलों से काफी डेकोरेशन --

दो लड़कियां डॉक्टर हैं।

मशीन में ब्लड एंड यूरियन टै --

लोग अपना सामान लेकर ईरिक्शा पर जा रहे हैं।

काफी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।

बाहर बालाजी स्वीट्स का बोर्ड --

जाने के लिए छोटा सा रस्ता बनाया गया है।

मान पड़ा है इसमें काफी फेविकोल गम --